काफी गाड़ी रखी हुई है ओर यहाँ ठेला भी लगा हुआ है साइकिल भी रखी हुई है कुछ महिलाए ब बैठी है बैंक में पैसे निकालने के लिए--

ये मेरी सब्जी की दुकान है जिस पर मिर्ची रखी हुई है और ये गोभी भी रखा है और सोंड कासी मिर्च रखी है टमाटर पड़ा हुआ है बैंगन है।

हाँ यहाँ पर शंकर जी की प्रतिमा राखी हुई है यहाँ पर संत लोग काफी आते है और हम भक्त लोग भी यहाँ आते है इनके दर्शन करने के लिए--